और एक टैंक लगा हुआ है जिसका कलर स्काई ब्लू कलर है।

कार के पास बैठा हुआ बाल्टी में कुछ करता दिखाई दे रहा है।

खड़ा हुआ कार के बोनट पर कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज़ में हमें एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है यह एक स्टेट बैंक ऑफ --

दिखाई दे रहे हैं जो की लाइन लगाकर खड़े हुए हैं।

यहां पर स्नेक्स का एक रिसेप्शन भी नजर आ रहा है।

बोट पर जाने का रास्ता भी बना हुआ है यहाँ पर हरे-भरे झाड़ भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर यशवंत --

जिसमें की कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी फ्रेम करके लगाई गई हैं।

और एक व्यक्ति वॉकिंग एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहा--

यहां पर बहोत सारे लोग पंगत में बैठ कर--

तीन टोल टैक्स नाके दिखाई दे रहे हैं।

और यह फिलहाल में बंद है।

फूलों से यह सजी हुई है फूलों से बने हार-मालाएं इस पर टंगा हुआ है।

केले के पत्ते लगे हुए हैं और यहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही है।

यहां पर हमें लकड़ी के फर्नीचर बनते हुए दिख रहे हैं।

यहाँ पर यह पहाड़ काफी ऊँचा है जिस पर की हरे-भरे पेड़ लगे हुए हैं इस पहाड़ के ऊपर दोपहर की धूप पड़ रही है।

जिसका की कलर प्योर व्यू नजर आ रहा है।

चटपटे व्यंजन्स के पैकेट रखे हुए दिख रहे हैं। यहां पर एक कार्टून की ऊपर स्प्राइट और--

इस इमेज में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

इस रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लोग खड़े हुए बातें कर रहे हैं।

यहां पर महिलाएं और पुरुष दोनों ही हाथ जोड़ कर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें एक प्ले जोन दिखाई दे रहा है जो कि बच्चों के लिए हो सकता है।

इस इमेज मे हमे एक वॉटर पार्क दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर हमें एक ठेला दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर--

स्काई ब्लू कलर का केक रखा हुआ दिखाइ दे रहा है।

दृश्य दिख रहा है जिसके बीच में से--

सड़क पर ज़मीन पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें सभी लोग सफेद टोपी लगाए बाय लाइन खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

और स्टेज पर टीचर असेंबली करते हुए दिखाई दे रही है।

यह एक बुक का शॉप नजर आ रहा है।